बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है उसके पास मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा --

इमारतें दिखाई दे रही हैं और --

ये एक दुकान है दुकान पर--

ये एक पैलेस है पैलेस में बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है।

कार को मैकेनिक ठीक कर रहे हैं।

ऊपर लिखा है अपना ढाबा ढाबे के अंदर बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है।

ये एक सैलून है यहां कि एक लड़का कुर्सी पर बैठा है।